एक व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर गुब्बारे लगे हैं।

गोले के बाहर तीन मोटरसाइकिले खड़ी हैं।

चिडो के बगल में एक टेप बेन्च है जिसकी पा--